एक मार्केट का है जिसमें की बोर्ड लगा हुआ है पं--डित मिश्री लाल मिश्रा पुस्तकालय इसके नाम में भी दम है। और --